कुछ पेड़ दिख रहे है और घास लगी है और बादल खुला-खुला नज़र आ रहा है बांध मे से पानी गिर रहा है।

काँचे पर हं हं बल्ब लगे हुए है छोटो-छोटे और ऊपर व्हाइट लान है और उनका हं हं डोर ब्लॅक कलर का है।

और नीचे व्हाइट फर्श है रेलिंग बनी हुई है ऑरेंज कलर की। कुछ बोतलस रखी हुई है।

एक ग्राउंड है ज़ नीचे अ पेड़ लगे हुए है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं मोटरसाइकल दिख रही हैं और रोड दिख रहा है ग्राउंड दिख रहा है ब्लू कलर की बाल्टी दिख रही है।